पहाड़ में बर्फपड़ने के बाद जब सर्दी बढ़ती है तो ढाबे में जाके चाय पीना और फ़िर वहाँ पर मैगी --

तो फिर वो घर घर नहीं बनता।

जहाँ जाएंगे नेचर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं हम नेचर का सबसे बड़ा विरोधी और सबसे बड़ा दुश्मन हम इंसान ही हैं।

ऐसा लगता है कि जसे नीचे भी दीवार बनाई गई है।

अगर-अगर सच में ये कोई मछली है तो म-मैं तो इसके करीब कभी न जाऊ।